एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान मे कुछ समान दिखाई दे रही समान दिखाई दे रही कुछ डमरू दिखाई दे रही है दिखाई दे रहे है टंगी हुई दिखाई दे रही है यहा पर कैंडिडैट आएंगे समान लेने आएंगे अन यहा बहुत लोग दिख रहे है।

एक लड़की दिखाई दे रही है उसने व्हा ए ब्लॅक कलर के टॉप पहन रखे है पहन रखी है और डान्स करते हुए नजर आ रही है स्टेज मे।

मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हैं हॉल मे कुछ फो फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं कुछ चेअर रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है गोंद रखा हुआ दिखाई दे रहा कुछ काम करते हुए नजर आ रहे है।

और यहाँ कुछ कार्टून जैसी दिखाई दे रहा है। कुछ पेन नजर आ रही है। लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और अलमारीयों मे जमी हुई बूक दिख रही है।

और नाव में खडा हुआ दिखाई दे रहा है यहा मुझे पेड पौधें भी नजर आ रहे है।

यहा समान लेते हुए नजर आ रहे--